इस तस्वीर में दो दरवाजे दिख रहा है मुझे।

तस्वीर में आदमी चश्मा पहने हुए हे।

ये चित्र में दो दुकान देख सकता हूँ।

मैं दुकान के सामने एक लाल कुर्सी देख पा रही हूं।

ये मेज के ऊपर कई तरह की दवाई मौजूद है।

छवि के दाहिने और कुछ पेड़ दिख रहा है मुझे।

इस तस्वीर में कुछ काउंटर नजर आ रहा है मुझे।

फोटो के एक दाहिनी ओर फायर एक्जीक्यूशन देख पा रही हूं।

फोटो की बाइ और एक ऐ_सी मशीन दिख रहा है मुझे।

चित्र की बाई ओर एक ट्रांसमीटर मौजूद है।

मैं ये तस्वीर में एक ईंट भाटा देख सकता हूं।

चित्र के चारों ओर कई सारे पेड़ नजर आ रहा है।

चित्र के दाएं ओर दो लोग दिख रहे हैं मुझे।

जिम सेंटर में बहुत सारे बैलून लगाया गया है।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

मंदिर के सामने कुछ लोग फोटो खींच रहा है।

तस्वीर में एक टीन से बनाई गई एक दुकान नजर आ रहा है।